ये एक ये एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर बहुत सारी कुर्सियां और टेबल रखी हुईं हैं टेबलों पर बहुत सारे आ मैट बिछे हुए है उसके ऊपर थालियां रखी हुई हैं और ग्लास रखें हुए हैं।

काटे चम्मच भी रखे हुए है कुछ लोग खड़े हुए हैं जिनकी पोशाक सफ़ेद और काले रंग की हैं एक आदमी काले रंग में खड़ा --

ये एक पेट्रोल पंप है जहाँ दो मशीने दिखाई दे रही है जिनसे पेट्रोल डालते हैं।

दो आदमी खड़े हुए हैं और कुछ डलवा रहे हैं। एक टेम्पो है और एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी हुई है। रात का समय हो रहा --

गुलाबी नीला हरा सफेद है। नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है जो काले रंग का है। उस पर एक आदमी बना हुआ है।

यहाँ एक शेर है जो की आ आगे और पीछे से बंद है। बीच में --

ये एक सब्ज़ी का बाजार है जहा बहुत से लोग हैंकुछ सब्ज़िया बेच रहे हैं ठेले पर कुछ सब्ज़ियां ले रहे हैं।

ये बहोत बड़ा घास का मैदान है जहाँ सामने तीन माले की बिल्डिंग है जो की बहुत बड़ी है उस बिल्डिंग का रंग सफ़ेद रंग का है।

गेड़ा लेट के आराम कर रहा है।

आस पास बस वैन गाडियाँ रखी हुई है। बीच मे पेड़ लगे हुए हैं। एक कोने से एक पेड़ दिखाई दे रहा है। जिसकी तरफ से बहुत छाव आ रही है।

पत्थर लगे हुए है। नीचे पीले रंग के ऊपर काले सफेद ऊपर छोटे-छोटे पौधे लगे हुए है। कोने से एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है। ऊपर --

ये एक पानी का पार्क लग रहा है। यहाँ बहुत से झूले लग रहे हैं।

ये एक शांत ज ज जगह प्रतीत हो रही है। जहाँ ठेहरी हुई झील है।